यह एक बहुत अच्छा जो है प्र प्रकर्ति का वातावरण --

ये एक फील्ड की फोटो है और इस फोटो में आपको बोहोत सारे पेड़ नजर आ रहे होंगे और ये बोहोत ही सुंदर फोटो है।

यहाँ पे बोहोत जाम लगा हुआ है रोड पे और ट्रैफिक लगा हुआ है।

यह एक बंदूक खाने की फोटो है जिसमें आपको बहुत सारे बंदूको की डमी नजर आ रही होगी ।

और दूसरी तरफ और भी घर नजर आ रहे होंगे जो एक आदमी जो पाइप से इन पौधों में पानी देते हुए--

और ये ये तो वेस्ट वैशाली में है।

और पुलिस का गेट बहुत ही बड़ा है डबल साइड गेट है।

ये एक गली मोहल्ले की फोटो है जिसमें आप को एक घर नजर आ रहा होगा जिसका कलर ग्रीन है और ये बड़ा ही बिल्डिंग है।

ये बहुत ही अच्छा ब्रिज है। पानी भी बहुत ही अच्छा और साफ है। घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है।

आपको रनवे नजर आ रहे होंगे। रनवे पे एक फ्लाइट खड़ी हुई है और ये यात्री य --

कोई दिल्ली गुड़गांव साइड एरिया की तस्वीर है और आपको सामने एक फोर्ड गाड़ी और पीछे हौंडा की गाड़ी नजर आ रही होगी ।

और वो नीचे ए.टी.एम. है जो कि नजर आ रहा है और कुछ अंधेरा भी है।